इस पिक्चर में वाटर पार्क का --

लगे हुए हैं और पेड़-पौधे के छाह में --

और वह कुर्ती बेच रहा है और एक रेड कलर का कुर्ती है।

आपने हाथ मेल रहा है ।